जैसा की मैं देख पाया हूँ मुझे पीले कलर की दिवार पर सोनोग्राफी की मशीन भी नजर आ रही हैं।

ऊपर की बुटीक में लहंगा चुन्नी व स्कर्ट टंगी हुई है नीचे की बुटीक में साड़ी और लहंगे टंगे हुए हैं।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

इसमें ऊपर कंघी शीशे रखे हुए हैं जो कि दूल्हा दुल्हन के नाम से हैं नीचे मुझे कुछ बिंदियां भी नजर आ रही हैं।

जो कि व्हाइट कलर के है मगर कुछ लकड़ियां भी नजर आ रही है।

मुझे इस पर एक गत्ता व कुछ खोली में रखी हुई चादर भी नजर आ रही है मुझे कुछ ईंट के टुकड़े भी नजर आ रहे हैं --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये काफी बड़ी--

काफी सारे टायर टंगे हुए हैं मुझे कुछ साइकिल भी नजर आ रहे है ।

मुझे एक एक ताकत नजर आ रहा है मुझे एक पानी का जग नजर आ रहा है एक छोटा पंखा नजर आ रहा है ।

मुझे कुछ बाइके भी नजर आ रही हैं मुझे व्‍यक्ति भी नजर आ रहा है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आस-पास काफी पेड़ भी है।

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ मुझे एक चर्च नजर आ रहा हैं।

मुझे कुछ गमले भी नजर आ रहे हैं मुझे एक टेबल नजर आ रही है जिस पर व्हाइट कलर का कपड़ा है ऊपर बाइबल रखी हुई है।

मुझे पीछे डिबर भी दिखाई दे रही है किउकी ब्लैक और हैमुझे साइड मई वाश्पिसन भी दिखाई दे रहा है ।

मुझे साइड में कुछ भोंपू भी नजर आ रहे हैं मुझे एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है जोकि व्हाइट कलर की--

मुझे कुछ घास भी नजर आ रही है घास पर कुछ पत्थर भी नजर आ रहे हैं ।

कुछ बल्‍बस भी नजर आ रहे हैं मुझे कुछ कार्टून्‍स भी नजर आ रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मुझे एक स्‍पीकर भी नजर आ रहा है ।

एक ट्रक भी नजर आ रहा है जो कि रेड कलर का है मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो कि है।

मुझे एक काउंटर भी नजर आ रहा हैं जो की ब्लैक कलर का हैं हेयर स्पा वाली क्रीम मशीन --

मुझे कुछ पंखे भी नजर आ रहे हैं जैसा कि मैं देख रहा हूं मुझे कुछ बल्ब एल_ई_डी के छोटे छोटे पैकेट नजर आ रहे हैं।

मुझे दो व्यक्ति भी दिखाई दे रही हैं वे एक कंटा भी दिखाई दे रहा हैं --

मुझे लकड़ी की इक केबाड़ नजर आ रहे हैं मुझे एक रेलिंग भी नजर आ रही है में पिलर नजर आ रहे हैं।

मुझे सामने एक मोटिव प्लग नजर आ रहा हैं मुझे एक एलईडी नजर आ रही हैं जो की दिवार पर --

वेक और वाटर फायर की मशीन भी नजर आ रही है मुझे एक पंखा भी नजर आ रहा है मुझे किसी की मूर्ति नजर आ रही है जिस पर हार टंगा हुआ है --

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मुझे एक लाइब्रेरी नजर आ रही है ।

मुझे एक सिड़ी भी नजर रा रही है मुझे सामने एक लकरी का गेट भी नजर आ रहा है मुझे काफी पंखे--

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मुझे एक कैफे नजर आ रहा है जिसके सामने की दीवार पर फास्ट --